हाउ दीवाल लउकता जमिनिया सफ़ेद लउकताकरिया बेग बा सब चीज --

आदमी लउक ताड़न स पानी बा पनिया में लइका बाड़न स खड़ा बाड़न सा नहा ताडन स भगवान जी ऊग ताड़न नाय बा नैया पे आदमी बाड़न स बाड़ी बगीचा लउकता जमीन लउकता पानी लउकता।

लौकता मेहरारू बालिसन। गाड़ी लागल बालिसन। खरीदे गइल बाड़सन। पीछे गाड़ी आवातली फ़ोक्स मरले बा ऊपरा उज्जर बा लाल हरियल करिया --

बुहारवा कलर बा। आसमानी बा। करिया करिया छाप बा। हर कलर का पर्दावा बा।

स्कूटी खड़ा बाली सशटर बंद बा बैंक बंद बा अगवा नाला बहता ऊपर से गेरल बा एनिया लाल लउकता हेने पियर बा आसमानी बानीला बा --